फोटो में मुझे बहुत सारी कार दिखाई दे रही है। जिसके पीछे बड़ी सी बुल्डिंग ]

एक सड़क की फोटू दिखाई दे रही है जहा सड़क के सामने एक स्कूल भी दिखाई दे रहा है जहा पे मोटर्स भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक कार का शोरूम दिखाई दे रहा है यहाँ सड़क पे से एक बाइक वाला इंसान जाते हुए दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मुझे एक रेनॉल्ट का शोरूम दिखाई दे रहा है जिसमे हम लोग को साइक मे दिखाई दे रहा है यह शोरूम के चारों तरफ कांच लगे हुए दिखाई दे रहे है जहां पे एक नई रेनॉल्ट निकलती हुई दिखाई दे रही है जो की सफेद कलर मे दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक मूर्ति दिखाई दे रही है जहां यह दो मूर्ति दिखाई दे रही है इसमे से एक पुरुष और एक महिला दिखाई दे रही है इस मूर्ति मे पुरुष बैठ हुआ दिखाई दे रहा है महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है यह मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है यहाँ इसके पीछे एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इसके नीचे कमल के डिज़ाइन बने हुए दिखाई दे रहे है। ये महिला ने हरी कलर के साड़ी पेहने हुए दिखाई दे रहे है। इसके नीचे मुझे बड़ी मूर्ति भी दिखाई दे रही है। मौसम साफ दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे पांच हजार भी दिखाई दे रही है। ये बहुत ही अच्छा फोटो लग रहा है। यहाँ-यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा - अच्छा व्यू भी दिखाई दे रहा है।